जो हरे रंग का है एक बिल्डिंग है जो व्हाईट और रेड कलर का नजर आ रहा है और पत्ते है जो हरे-हरे दिखाई दे रहे बैग भी है जो लाल रंग का है।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो आगे में कुरकुरे लगा हुआ है जैसे लेज बिंगो टेढ़े मेढे दिखाई दे रहे हैं नीचे एक टेबुल --

और सीरिया है जो सीमेंट बालू का बना हुआ एक छोटा सा और बगल में घर है जो हल्के पर्पल कलर का दिखाई --

लगे हुए है जो घर के बाहर है और एक तरफ सिरी है जो लोहे का बना हुआ है जो रेड कालर का दिखाई दे रहा है ऊपर में पेड़ है जैसे पीला पिला।

चीज़ लगा हुआ है और एक स्कूटी है जो लाल रंग का है जो दिखाई दे रहा है बड़ा-सा ग्राउंड है।

नीचे में छोटा सा और घर है जो दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है।

रेड व्हाइट ब्राउन लगा हुआ है ऊपर में आसमान है जो ब्लैक एंड व्हाइट है घर है जो सुगपंखी कलर का है।

ये स्विमिंग पूल है जो थोड़े लाल आसमानी ब्लू कलर के दिखाई दे दूर में एक टॉवर है जो दिखाई दे रहा है।